ऊपर दिए गए छवि एक घर की है।

हमें छवि में दीवार सफेद नजर आ रहे हैं।

दीवार के आगे हमें दो पेड़ नजर आ रहे हैं।

आसमान नीले रंग का है।

हमें छवि में पेड़ दिख रही है।

जमीन पर मृत टहनियां दिख रही है।

लोहे के पुर्जे मिट्टी के ऊपर रखे हुए हैं।

मे काले रंग की प्लेट नजर आ रही है।

ऊपर दिए गए छवि में हमे भूरे रंग का सोफा नजर आ रहा है।

फर्श सफेद रंग की है।

बिस्तर के पास खिड़की है जो गुलाबी और सफेद पर्दे से ढकी हुई है।

ऊपर दिए गए छवि में हमें तीन सी_सी_टी_वी कैमरा दिख रहे हैं।

में हमे कुछ लोग नजर आ रहे है।

फर्श काले रंग की दिख रही है।

इस छवि में हमें तीन पेरिस व्हील भी दिखाई दे रही है।

पानी के आस पास बहोत सारे पेर है।

में बहुत सारे किताबे है जो किताबों की अलमारियां मे रखी है।

मैदान के बीच में हमें तीन बछड़े दिख रहे हैं।

दूर में हमें दीवार भी नजर आ रहे हैं।

ट्वि में हमें बहुत सारे लकरी के टुकड़े दिख रहे है।

ऊपर दिए गए छवि में हमें कुछ पौधे देखने को मिल रहे हैं।

हमें कई सारी पेड़ देखने को मिल रहा है।